ये पहाड़ी इलाके है पत्थरों के ढेर लगे हुए है छोटे-बड़े पत्थरए है पेड़ है आसपास खजूर के पेड़ है जंगले है पहाड़े है।

यहाँ लाइन के काम हो रहे है।

अलग-अलग टीमों से है सब है।

यहाँ की सजावट अच्छी है टाइल्स लगी है लाइट है यहाँ बड़ी बिल्डिंगस है।